एक लाइट पोल भी लगा हुआ है सामने रोड बहुत ही साफ सुथरी नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में दिखाया जा रहा हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों से--

पौधशाला में बनाए गए यह पेड़ पौधे काफी ही मनमोहक लग रहे हैं।

वातावरण के अनुकूल लग रहा है। इस प्रकार की साफ-सफाई मनुष्य को--

इत्यादि लगाए गए हैं स्कूल काफी बड़ा और अच्छा भी लग रहा है।

किया गया क्षेत्र में खर्चा बहुत ही अद्भुत है।

यह चित्र किसी घर के बाहर से नीचे की ओर से लिया गया है ताकि--

कला का निर्माण किया गया होगा आसपास का सूखा क्षेत्र यह दर्शाता है कि इस पेड़--

इस चित्र में हमें चर्च के पादरी यानी फादर को दिखाया जा रहा है जोकि--

घरेलू बगीचे का लग रहा है जिस जिस प्रकार घर में ही बगीचा तैयार किया गया हो।